जिसने हरे कलर का जैकेट पहन रखा है।

जिसमें सामने दीवाल पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग फोटो लगे हुए हैं।

कुछ लेबर साइड में काम करते हुए दिख रहे हैं एक चेयर डली हुई है।

ये फोटो एक मैदान का फोटो है जिसमें कुछ टैंकर्स कुछ ट्राली खड़ी हुई है।

इस फोटो में एक सामने टेबल दिख रही है।